स्टेशन है जो बहुत ही खाली और सुससन लग रहा है यहा पर रेल की पटरिया बिछी हुई है उसके ऊपर पर तार है और यह स्टेशन जो है आउट ऑफ डूर है।